अ राजधानी बस है।

बलजंती फुल बहुत सुंदर लग रहा है दो कार पार्क हुए हैं।

ग्रोसरी सामान भी होता है ब्यूटी प्रोडक्ट भी होता है चॉकलेट भी होता है बच्चे का खेलने का जगह भी है देखने लायक--

इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी बहोत सुंदर है।

बहुत सुंदर लग रहा है ये प्रवेश द्वार--

बस टेंट बस गड़ा है खाने- पीने के लिए दो पतीले है।